दीवाल में बम तार टंगे हुए हैं।

आगे मे एक टेबल है जिसके ऊपर में भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे झोपडी के घर हैं जो ग्रीनी कलर के कपड़े से ढके हुएं हैं।

आगे में भी एक पेड़ है।

इधर साइड में एक बकरा है जो बैठा हुआ है।

एक बहोत बड़ा फूल का पेड़ है जिसमें फूल लगा हुआ है।

यह एक जिम है आगे में एक आदमी जिम कर रहा है जो व्हाईट और ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है।

किसी के साइड में एक बॉक्स है ।

एक दीवाल में एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है।

ऊपर छत में वाइट कलर की बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

नीचे में एक ग्रीन और एक रेड कलर का प्लास्टिक दिख रहा है।

बहोत बड़ा एक शीशा लगा हुआ है।

आगे में एक छोटा सा बैठने का सोफा टाइप में भी है।

यह एक कपड़ा का दुकान है जहां पर बहुत सारे कपड़े हैं।

क्रीम साबुन फेस वॉश पतंग उड़ाने का रस्सी तेल डायरी --

आगे में एक लाइट लगा हुआ है और बहुत सारे तार हैं ।

यह कोई दुमका का विद्यालय है जहां पर दो बड़े-बड़े गेट है।

साइड में इधर एक पोस्टर लगा हुआ है।

जिसमे बहोत सारी ब्लैक कलर की बॉक्स लगे हुई हैं।

डी_जे का नाम है शर्मा ऑडियो ।

एक टेलीफोन भी है और एक आदमी उधर खड़ा है।

एक टावर चौक का भी पुतला है और एक मूर्ति भी है।

एक बिजली का खंबा है जिसमें एक पोस्टर लगा हुआ है।

इधर साइड में थोड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

एक कचड़ा का डब्बा है।

दीवाल का कलर व्हाइट है और नीचे में बहोत सारे टाइल्स लगाए हुए हैं।

फर्श का कलर व्हाइट है उसके ऊपर में एक चटाई है।

कुछ ये बहुत ज्यादे छोटे छोटे मछली है।

उधर दूर में एक बहोत बड़ा पेड़ है।

बहोत सारे खिड़की भी है जिस्में शीशा लगा हुआ है।

उधर साइड में भी बहुत बड़े बड़े घर हैं।

छत ढालने के लिए बहोत सारे पट्टे भी लगे हुए है।